यहाँ दीवाल पर लक्ष्य अकादमी इंगिलश हिंदी मध्यम लिखा है।

आस-पास भी है ऊपर साइड पर और घासे बनी है।

ऊपर कैलेंडर लगा हे।

कागज़ वाली चीज़ो से कुछ बना रहें हैं।

यहाँ उसका बड़ा बोर्ड भी ल--

अंदर बड़ी बिल्डिंग और घर बने हैं।

कुछ अ टॉवल रखे हैं।

जगह भी है रेस्टोरेंट में लाइटें जल रही हैं।

और लाइटे लगी हुई हैं।